बहुत सारे आदमी एकट्टे हो रहे हैं ये--

यहां पे आप देख सकते हो अंडा की ट्रे रखी हुई है और यहां पे आप देख सकते हो चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं झाड़ियां लगी हुई हैं।

ली ली ली लिखा हुआ है यहां पे एक जनरेशन लिखा हुआ है यहां पे-- मिलते है।

यहां पे लिखा हुआ है।

खेल देख रहे हैं और ये दो और आदमी खड़े है।

यहां पे आप देख सकते हैं पेड़ भी खड़े हुए हैं इधर भी पेड़ खड़े उधर भी पेड़ खड़े है यहां पे ये --

यहां पे देख सकते हो दो लो दो लीटर रखी हुई है कोट रखे हुई है।

बगल में लाइट लगी हुई है यहां पे आप देख सकते हो हरा--

यहां पे आप दो पहाड़ हैं यहां पे हरी हरी घास लगे हुए हैं पेड़ पौधे लगे हुए हैं।